ये खाली मैदान है मतलब शहर से दूर खाली प्लॉट है और जिसमे अभी रोड कच्ची है कुछ रोड के बगल में एक पोल है और यह खाली साथ जमीन है जिसमे पानी भर रखा है |

और ये ऑटो के आगे फ्रंट मिरर पे कुछ तमिल में लिख रखा है सो आई थिंक ये साउथ की शॉप है साउथ के एरिया है।